यहां डांस करते लड़कियां नजर आ रही है | जो व्हाइट ब्लू ये ए सॉरी रेड ब्लू कलर की--

बहन खरीदती है और भाई भाई को बांधती है ये राखियां काफी पैकेटे में रखी गई है और राखी का होलसेलिंग होता है यहाँ से काफी लाल पीले गुलाबी कलर के राखी है।

यह कार्ड कार श्रृंगार है यहां चो छोटा बरियारपुर एन.एच. अट्ठाइस नियर कोल्ड स्टोर मोतिहारी के पास है।